और तीन महिलाएं उस नदी को पार कर रहे जिसमें की एक--

होटल सी दिख रही है जिसमें की कुछ यहां--

गेट दरवाजा लगा है और एक पंख लगा है।

यह एक मकान है जिसमें की अच्छा--

और कुछ क्यारी भी जगह एक बालक भी खड़ा हुआ है बैठा हुआ है उसमें।

और ऊपर लाल कलर का बानस है और अच्छी बेहतरीन ग्रिल लगी हुई हैं।

यह एक बच्चों के कपड़े की दुकान दिख रही है।

जो कि दो तीन व्यापारी हैं और अपनी वह मच्छी रखे हुए हैं छोटी छोटी मच्छी रखे हुए हैं।

और टेबल में लाल या सफेद कलर के--

कुछ झाड़ छोटे-छोटे दिख रहे है।

एक सैलून दुकान दिख रही है यहां कटिंग बालों की हो रही है।